और भी बहोत सारी ईटें पड़ी हुई दिखाई दे रहीं । कुछ लकड़ियां भी रखी हुई दिखाई दे रहीं --

ऊपर चद्दर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कुछ मशीन वगैरह रखे क्यू आर कोड भी दिखाई दे रहा है।

कुछ गमले वगैरा भी रखे हुए हैं। नीचे घास उगी हुई है। ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है और एक बिजली की तार भी दिखाई दे रही है।

पे कुछ लाइटें भी जलती हुई दिखाई दे रही है और चेयर भी रखी हुई है। जिनका कोई --

यहा पे कुछ बच्चे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ पेड़-पौधे भी लगे हुए दिखाई दे --

एक पेड़ लगा हुआ है जिसके ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है। घास भी उगी हुई दिखाई दे रही --

यहाँ पे बहोत सारी बाइकें भी रुकी हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ पौधे वगैरा भी लगे हुए हैं।

यहा पे जंगल दिखाई दे रहा है। जिसमे बहोत सारी घास उगी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पे चेयर वगैरह भी रखी हुई दिखाई दे रही है और टेबल भी रखी हुई है।